और कुछ जानवर जो है इस खेत मे घूम रहे है और --

दुकाने दिख रही है ।

और पुल के ऊपर जंग जैसा लगा हुआ है पानी में --

शायद बालो के ऊपर है । किसी नदी के किनारे पर दो बच्चे है । जिसमे से एक ने --

का दरवाजा लोहे का बना हुआ है जिसके उसके तरफ कुछ व्यक्तियों को जाने के लिए --